और ये पुतला-वुतला बनाके बइठा दिए है खड़ा कर दिए है जो कपडा पहना है इनका मुंडिये नइ दिखाई दे रहा है और बहुत सारा रेक मै भी कपड़ा रखा हुआ है लेडीज लोग के लिए।

कराकट से घेरा हुआ है पूरा माल टाइप से दिख रहा है ।